टायर लगाया हुआ है सीट है सीट ब्लू कलर का है।

एक बड़ा सा प्रवेश द्वार बनाया गया है।

और किनारे पर भी बहोत सारे फूल से सजाया गया हैं।

कुछ बांस लगाए हुए हैं बगल में रॉड लगाया हुआ --

बहुत सारी कुर्सियाँ लगाई हुई है ब्लैक कलर का लाइट जल रहा है टेबल पे ग्लास रखा हुआ है।

यहां पे कई सारे लोग हैं जो यहां पे एक स्लाइड बनाया हुआ है बड़ा सा और स्लाइड ब्लू कलर का और वाइट कलर का है ऊपर से धूप आ रहा है।

बगल में दुकान है उसमें शटर लगाया हुआ है ग्रील लगाया हुआ है।